रखे हैं और नीचे दो बाल्टी दिख रही है।

सामने सड़क दिख रही है जिसके एक साइड बहोत --

बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं दूर पहाड़ दिख रहा है ऊपर काला निला सफेद आसमान दिख रहा है।

पानी दीख रहा है बीच में एक मेड है जिस पर एक बड़ा पेड़ है।

और सभी मास्क लगाये हुए है पीछे बहोत सारी बस--

सामने एक बिल्डिंग का गेट दिख रहा है जो क्रीम कलर का है जिसके चारों ओर ग्रीन सफेद पट्टी--

ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए है और कुछ छोटे पेडे है उपर सफेद अ--

जाली लगी हुई है और चारों ओर बहोत सारे पेढ़े दिख रहे हैं साइड में --

लगे हुए है जो पीले लाल नीले कलर के है और साइड में एक घर है जो पीले कलर का है जिसके सामने बड़ा--

रा है और उसमें ऊपर झालर लगी हुई हैं एक खंभा दिख रहा है जिसमें ऊपर--

वो अलग-अलग डिजाईन के है अलग-अलग उसमे--

नीचे हरी घास है और कुछ पेड़ है जो ब्लैक इन वाइट --

मैं ये घर देख रहा हैं जो पीले किए सफेद और हरे से कलर का हैं जिसमें रेलिंग बनी हैं जो काले कलर की हैं और सामने शटर बनी हुई हैं जो --

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं जिनके समने कंप्यूटर रखा हुआ है और सामने दिवार --

में एक बिल्डिंग हैं जो कि रे--

बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ बने हुए हैं और नीचे एक--

बर्तन रखे हुए है जिनके अन्दर कुछ सामान है और ऊपर ढक्कन लगा हुआ है पीछे दीवाल में गुबारे हैं।

पीछे नीला दिख रहा है और एक ही ए_सी ही दिख रहा है नीचे लाल कलर की मिट्टी है ऊपर नीला सफेद आसमान--

सामने एक दुकान में रैक दिख रही है जो बड़े बड़े हैं और सफेद कलर की है जिनमें साइड में एक--

इसके साइड में अंडरवियर के बड़े बॉक्स रखे हुए है जो उस में छपी हुई है और पिले कलर के बॉक्स है इनके ऊपर रंगीन बॉक्स रखे हुए है और ऊपर बनयान के--

सामने दो स्विमिंग कूल दिख रहे हैं जिनका पानी नीला दिखाई दे रहा है एक मेज छतरी वाला--

बनें हुए है साइड में मुर्तिया बनी है इनके उपर--

गुलाब जामुन है रसगुला है--

और ऊपर पेड़ दिख रहे है और ऊपर लाइट लगी हुई है अंदर आर--

और नीचे हरि घास लगी हुई है और बोहोत सारे--

सामने एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे हरी घास है और एक बोर्ड लगा हुआ है जो ग्रीन कलर का है जिस पर सफेद कलर से --

रंगीन पोस्टर लगा हुआ है और दोनों साइड बहोत सारे टायर रखे हुए हैं साइड में एक खंभा है।

ये एक हॉल है जिसमे एक अ दो कुर्सी दिख रही है जो नीले कलर है और चारो और --